और काफी अगल-बगल झाड़ वगैरह रखा हुआ है।

काफी अच्छा अअअ चेयर वगेरा रखा हुआ है और गुलदस्ता रखा है।

काफी अच्छा अ चेयर वगैरह रखा हुआ है गुलदस्ता रखा है।

वेरी नाइस बहुत ही अच्छा और बाहर गैराज वगैरह है फोर व्हीलर टू व्हीलर --

ऊटी वगैरह -वगैरह खड़े है और पेड़ है बड़े - बड़े पेड़ है अगल -बगल में बिल्डिंग भी है।

और कांच का ग्लास है काफी ग्लास रखा है गैस है गैस में--

उस समय यह मतलब यहाँ कार्य किया जाता है उसकी बिल्डिंग अ--

इस इसको क्या बोलते है ट्रॉली --

इस अअ अ इसको क्या बोलते है ट्रॉली --

सजावट और रैक रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है।

सजावट अअ रैक रखने का तरीका बहोत ही अच्छा है।

यह मोर है मोर पूरा अपना पंख फैलाकर नाच रहा है काफी अच्छा लग रहा है।

आरती बुक सेंटर या आरती बुक सेंटर है और यहाँ पे काफी पब्लिक है इतनी पब्लिक की जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती कहाँ --

और बुक सेंटर के अगल -बगल जो दुकानें है बंद है शटर डाउन हैं।

और काफी नाश्ता वगैरा का सामान रखा हुआ है और फ्रीजर में जो है अ--

और अ और खम्बे वगेरा भी है।

चित्रधारा जल जल प्रपात--

क्रिकेट का मैदान लग रहा है और ये--

क्रिकेट का मैदान लग रहा है और ये--

शर्ट टी शर्ट पहन कर दो जेंट्स खड़े है।

कॉलेज काफी जूना लग रहा है और काफी बड़े-बड़े लिप्टस के पेड़ है।

सड़क अ बिल्डिंग के नीचे बाहर के साइड --

सड़क आ पेड़ो के निचे बाहर की साइड --

मंदिर की पूरी एरिया भी है मंदिर के सामने जस्ट बहुत ही अच्छा राउंड - राउंड में घास का--

सजावट किया गया है झंडा भी काफी बड़ा है।

बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी है।

बहोत ही सूंदर बिल्डिंग बनी है।

बहोत ही बड़ा प्लेटफार्म आई थिंक लग रहा है।

छोटे - छोटे पेड़ वगैरह है काफी बड़े - बड़े भी है और पार्क के बाहर बहुत ही अच्छा घर --

और एक जेंट्स भी बैठा हुआ है।